रैक है रैक में काफी सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं और मॉल है जिसमें एक पार्टीशन है दूसरी तरफ और भी कुछ परदे वैगेरा रखे हुए है खम्बे हैं जो की ब्लू कलर के हैं ।

होटल है ऊपर शेड लगा हुआ है पंखा है रैक लगा हुआ है काउंटर है।

जो की रेड कलर की है टू-व्हीलर है पड़ी हुई है दुकान के बाहर आसमान नजर आ रहा है पेड़े नज़र आ रहे है और रोड नज़र आ --

एक कार है और आसमान है जिसमें कार में अ सीधी खड़ी हुई है ऊपर आसमान है।